और यहां पर बहोत सारे पौधे भी रखे हैं।

यहां पर एक काम लगा हुआ--

यहां पर एक गाड़ी है जिसके ऊपर सैनिक क्रेन सर्विस लिखा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर श्री राम का मंदिर है।

यहां पर कुछ बच्चे हैं जोकि एक्सरसाइज कर रहे हैं।

टी_वी भी रखा हैं और यहां एक पंखा भी लगा हुआ--

यहां पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा --

और यहां पर कुछ गाड़ियां भीं--

ये एक आदमी मछलियों को बेच रहा--

और उसमें एक बड़ा सा झूमर टंगा हुआ है।